इसके ऊपर श्री श्याम परिवार लखनऊ लिखा हुआ है।

यहां पर एक आर_सी_सी सड़क नजर आ रही है जो पूरी तरीके से इंटरलॉक है।

टावर के आसपास एक दुकान नजर आ रही है जिसके सामने विभिन्न प्रकार के पोस्टर लगे हुए हैं।

उनके ठीक सामने लोहे के छोटे छोटे दरवाजे लगे हुए हैं।

यहाँ पर एक इमारत नजर आ रही है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।